ये एक पुलिस खड़ी हेगी और बस में चढ़ रही है। बस में काफी लोग आ नहीं पा रहे हैं और ऊपर तक बैठार दय हैं। ये पुलिस की बस कर रही है।

और रोक नहीं पाती है इस पे बहोत सारे तो ऊपर लोग बैठते हैं। इसमें आ नहीं पाते इसीलिए पुलिस रोज चली जाती है।

एक ऊपर झूमर सा लटकता रहता है। बहुत सारे काफी लोग होते हैं बहुत अच्छा लगता --